बहुत सारी बाइक्स दिखाई दे रही है यहा पे दो बेग भी दिखाई दे रहे है एक बेग दिखाई दे रहा है बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है दीवार पे पिंक कलर दिखाई दे रहा है एक पेनल लगा हुआ है जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है एक --

एक बैनर लगा हुआ दिखाई दे रहा है जो कि येल्लो ब्लू कलर का है और यहाँ पर एक शटर पे ग्रीन कलर दिखाई दे रह है स्काई ब्लू कलर दिखाई दे रहा वे बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है मीटर दिखाई दे रहा है दीवार पे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है।

और यहां पर ऊपर डार्क ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है आसमान कलर हल्का सा पिक दिखाई दे रहा है केबल दिखाई दे रही है और यहां पे एक दीवार पर वाइट कलर दिखाई दे रा --